जिसमें बहुत सारी शॉप्स दिखाई दे रही है ऊपर की ओर सबके बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें एक में श्री राम राजा मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है।

रोड दिखाई दे रही है रोड में गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे की ओर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं।

एक का कलर नीला और एक का कलर सफेद है और बहुत सारे हरे- भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें एक सफेद और काले कलर की गाय खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर सफेद कलर से गौर ट्रेडर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और साइडों में दीवारों पर सिन्रियाँ भी लगाई गई हैं।

सामने की ओर दो तीन शॉप दिखाई दे रही है।

यह एक गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

और साइड में पाउडर क्रीम वगैरा भी रखी गई है।

इनके ऊपर दोनों फ्लोरों में झंडे भी लगे गए हैं।

और रेता ही रेता दिख रहा है चारों ओर और साइडो में बॉउंड्रीयान भी बनी हुई दिख रही है।

शॉप के पीछे की ओर दो तीन बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं बहुत बड़ी बड़ी।

हाथी को ले जा रहे हैं एक पोल दिखाई दे रहा है।

तो ड्रेसिंग टेबल दिख रहे हैं तीन चार अलग अलग प्रकार के।

जिसमें हिरन घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्सी में।

डेकोरेशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अलग-अलग प्रकार के फूलों से सजाया गया है।

और रंग बिरंगी वाली लाइटे भी लगाई गई है दोनों साइड में।

जिसमें सामने की ओर शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक ही रंग के कपड़े पहनकर बैठकर फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहां कैमरामैन फोटो लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल के ऊपर चश्मा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है काले कलर का।

यहां एक गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

लाल पीले हरे गुलाबी रंग के अह झंडे लगे हुए हैं।

और एक म्यूजिक भी लख रखा हुआ दिखाई दे रहा है।